इस चित्र में पेड़ है और यह हरा भरा दिख रहा है।

इस चित्र ब यह चित्र बहोत सुंदर है और बर --

प देखने में बहोत सही है पेड़ भी बहोत अच्छे लग रहे है।